और उसके सामने एक बाइक खड़ा हुआ है एह शायद कोई बाँदा है व पैसा वैसा वेद रखाने की लिए ए.टी.एम में गया होगा और भी दो दुकाने है सारे इधर।

यहाँ पर हम देख रहे है रोड ही बहुत ही बढ़िया एक मार्किट है यहाँ पर एक बन्दा खड़ा हुआ--

ये वे एक कोचिंग क्लास चला रहे है बाबा ऐसे नाम है वो स्कूल कॉलेज के बच्चे पढ़ते पढ़ने के लिए आया है यहां पर--